एक महिला एक पुरुष बाइक में जा रहे है।

स्कूल दो तली की नजर आ रही है हरे भरे पेड़ पौधे से घिरे हुए स्कूल है।

यहां पर कुछ छात्र छतरियां चटाई बिछाकर योग योग कर रहे हैं शायद यह योग दिवस की तस्वीर है।

इस तस्वीर में एक थाली के ऊपर केला पत्ता रखा गया है उसके ऊपर दोसा और एक बाटी में चटनी रखा गया है।

इस तस्वीर में स्टेज सजाया हुआ दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर गिरजाघर की है।

ये गिरजाघर की तस्वीर है जो पीला और सफेद रंग से रंगा हुआ है।

दीवार पर बौद्ध अनुयायी की अच्छी सुंदर चित्र बनी हुई है।

दो खंभे लगे हैं लकड़ी के।

आदमी दिखाई दे रहा है।

सैमसंग लिखा दिखाई दे रहा है।

केला पत्ता दिखाई दे रहा है एक बोर्ड लगा हुआ है राइस मिल लिखा हुआ है।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

केला का गाछ दिखाई दे रहा है।

इसपे एक नीला कलर का टीन का घर दिखाई दे रहा है।

रिसेप्शन दिखाई दे रहा है।

आज घर दिखाई दे रहा है।

लाल फूल दिखाई दे रहा है।

रूम ता दिखाई दे रहे।

एक प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा है।

एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

कई सारी दवाइयां रखी गई है।

माझा का बॉटल में स्प्रे बनाया गया है।

दो जोड़ी ज जूते रखे हुए हैं चा पांच ट्यूब लाइट लगा हुआ है एक मैट लगा हुआ है आ पीछे की ओर दो पर्दा लगा हुआ है काले कलर का।